इस इमेज मे मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के आसपास बड़े बड़े लाइन से बोहत सारे पड़े लगे हुए है नदी के अंदर कुछ लकड़ी के टुकड़े डले हुए है नदी के किनारे पर बोहत --

सारी मिट्टी ड-लगी हुई है कुछ मिट्टी इसमे नदी में गिरी हुई है ।

दीवारो पर बड़े से पोस्टर लगा हुआ है एक दीवार पर बहुत बड़ा काँच दिखाई दे रहा है इनका गेट खुला हुआ है।

यहाँ फ्लाउअर शॉप है लकड़ी की बनी हुई है यहाँ एक टेबल दिखाई दे रहे है। टेबल के ऊपर दो बाल्टी ही दिखाई दे रही है जिसपे बहुत सारे फ्लॉवर लगे हुए हैं।

पीछे एक गेंदों की मा- माला बहुत सारी माला टंगी हुई है बगल में एक चेयर --

जंगल के बीच में एक रोड दिखाई दे रही हैं। यहाँ रोड पे बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं रोड कच्ची है।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

इस इमेज में मुझे बड़ा सा खाली ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड के पास में मुझे कुछ अ दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पोस्टर पर एक लड़की है और एक लड़का बना हुआ है इन दोनों के हाथ में डंम्बलस मुझे दिखाई दे रहा है।

नदी के किनारे पर बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ इन में कुछ महिलाएं नदी में आ नहा रही हैं डुबकी लगा--